एक बड़ा सा दीवाल पर बोर्ड भी बना हुआ है।

आस पास पेड़ भी लगाए गए हैं।

एक मछली का बाहर भी निकल रही है।